फूल है लाइट है चेयर है टेबिल है। चारों तरफ उजाला - उजाला है। सीनेरी है।

खम्भा है चारों तरफ पानी है।

एक आदमी दो आदमी जमीन से --

एक लड़की भरत नाट्यम डांस कर रहे। पीछे आ पीछे बैनर में कुछ लिखा है हि इंग्लिश में।

खाने के लिए दुकान कैंटीन सब कुछ इधर अवेलेबल रहता है।